फोटो बनी हुई हैं जहां पे नीचे की ओर मिट्टी भी दिखाई दे रही है।

इसके ऊपर सामान रखे हुए है नीचे की ओर मिट्टी भी दिखाई दे रही है।

इसके ऊपर काफी सारे समान और कार्टून रखी हुई नजर आ रहे हैं जिनकी कलर अनेक हैं।

पीछे की ओर एक झूला दिखाई दे रहा है।

पिछे की ओर एक ईंट की घर नजर आ रही है।

यहां पे नीचे की ओर पानी भी दिखाई दे रही है।

एक रूम की फोटो बनी हुई है यहां पे दो आदमी दिखाई दे रहे हैं जिनकी कपड़े की कलर अनेक हैं।

बाहर की ओर झूले टंगे हुए हैं जो कपड़े और लकड़ी के मदद से बने हुई हैं।

काफी सारे खंभे में नजर आ रहे हैं जो लोहे की मदद से नजर आ रहे है।